यह तस्वीर किसी वेडिंग पार्टी की तस्वीर दिख रही है।

यहाँ पर एक लड़का बैठकर अपनी फोटो खींचा रहा है। यह तस्वीर बहुत ही सुंदर एवं सुशील दिखाई पड़ रही है। यह तस्वीर बहुत ही अच्छी है।

यह तस्वीर देखने में किसी मेरिज हॉल की गेट की तस्वीर दिखाई पड़ रही हैं यहा पर दो दिलों द्वारा सजाया गया हैं।

और यह फोटो बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है यहा पर बहुत से लोग शादी में आए हैं।

इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। यह एक शादी की कोई वेडिंग शूटिंग की तस्वीर है।

यहा पर एक दंपति अपना मेन गेट पर खड़े होकर तस्वीर खींचा रहै हैं यह तस्वीर देखने में बहोत सुंदर दिखाई पड़ रहा है।

यहा पे एक मनुष्य लेटा हुआ है और यह डॉक्टर की चेंबर दिखाई पड़ रही है। यह चेंबर बहुत ही साफ नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ रही है।

इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है यह तस्वीर किसी घर के कन्स्ट्रक्शन कार्य में फोटो ली गई है।

यहा पर कुछ लड़कियां डांस कर के जा रही है यहा पर बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से इस स्टेज को सजाया गया है।

यहाँ पर एक मनुष्य बैठकर अपनी फोटो खींचाया है। यह पहाड़ देखने में बहुत ऊंचा और विशालकाय दिख रहा है।

अलग-अलग प्रकार के मालो का दिखाया गया है। यहा पर जितने माले हैं सभी प्लास्टिक के मालो के जैसे है दिखाई पड़ रहै हैं।